यहा एक नीले रंग का सवीग पूल यहा सवीग पूल के चारों तरफ घेराओ किया गया है।

यह हमारे जामताड़ा में ही उपस्थित है यहाँ पे बहुत प्रकार के लोग आते जाते रहते --

यहां पर चेक का भी सुविधा उपलब्ध है यहां पर अंदर में एक ए.टी.एम. मशीन भी है या बैंक हमारे जामताड़ा में ही स्थित हैं।